एक फील्ड इधर है दूसरा फील्ड में बच्चे लोग खेल रहे हैं ।

और नीचे गाछ वृछ है छोटे-छोटे ।

और कई सीमेंट का घर है।

उजला लाइट और येल्लो लाइ लाइट --

स्वागतम लिखे हुए है।

ये है ए में बहुत क्यूटी लग रहे है ।

बी आर ज़ीरो ए.पी.एन. सत्रह अठाइस।

और फूल मे स्टिक साटे हुए हैं और गाछ वृछ है ।

और फूल है ऊपर में पर्दे लगे हुए हैं ।

कोई उजला है कोई गुलाबी है।

और कोई क्रेन होगा हमें दिख नहीं रहा है और आदमी का प --

और चारो तरफ से उ गाछ वृक्ष है।

और किताब बहुत मोटे-मोटे चल रहे है बी --

और यहाँ भगवन जी का मूर्ति है और उसमे अगरबत्ती जल --